और यहाँ पर कुछ बच्चों की फोटोज भी लगी हुई है।

यह एक डेम है।

और पीछे टावर भी बना हुआ है |

जहाँ पे के लोगों की बहुत भीड़ जमा हुई है।